पार्क भी है वहां अन्य प्रकार के वृक्ष पौधे लगे हुए हैं।

इ एक प्लेन रोड है यहां--

और आसमान भी पूरा नीला दिखाई दे रहा है।

एक स्कूल की है यहां काफी सारे बच्चे भी है जो की खड़े हुए हैं और--

चेयरो पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और --

दे रहा है और हरियाली से ये गार्डन बहुत ही सुंदर लग भी रहा है।

कपड़ों की दुकान का है यहां--

टीन बेचे जाते है यहां अलग अलग प्रकार के काफी सारे--

पोज देकर फोटो खींच रहे है।

और गाडियां एक्टिवा भी खड़ी हुई है इस स्कूल के गेट का रंग काला है।